एक घर दिखाया गया है जिस पे बहोत सारे विंडो हैं पानी का टंकी है वो पूरी तरह से खाली है दरवाजा है गार्डन है।

एक जंगल दिखाया गया जंगल पे मिट्टी का रास्ता दिखाया गया बहोत सारे कंकड़ पत्थर दिखाए गए छोटे छोटे पौधे दिखाए गए कुछ बड़े बड़े--

ग्रीन कलर के कार्पेट बिछे हुए हैं एक लड़का है जो फोटो क्लिक कर रहा है और भी बहुत सारे लड़के इधर साइड पर है।

छोटा सा दुकान दिखाया गया है जिस पर लिखा गया है माही चंचका।

एक बहोत बड़ा सा खेत दिखाया गया खेत में छोटे छोटे पोधै वौधे दिखाये गए हैं जो--

जो बहुत बड़ा साड़ा है जो गेहूं टाइप के धान वान है जो पक गए हैं वो एक खेत है जो काफी सुखा है।

और कुछ ऊपर में सजा करके रखे कुछ नीचे उसे सजा करके रखा गया है ऊपर एल_इ_डी लाइट्स है फॉल सीलिंग का काम किया हुआ--